यहां पे सामने कुछ काट लकड़ी को काटने के लिए ग्रीन कलर की समान रखी गई हैं।

आदमी व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इसमें चारो तरफ से पेड़ पौधे है।

यहां पे सोफा भी लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है।

यह एक फास्ट फूड का दुकान है।

वहां उस मस्जिद में एक फैन भी लगी हुई है।

घर ग्रीन कलर का है और इसका बॉर्डर डार्क ग्रीन है।

यह एक होटल का चित्र है जिसकी ऊपर स्पॉट ऑन लिखा हुआ है।

सामने में एक ट्रैक्टर भी लगी हुई है।

अगल-बगल पेड़ पौधे भी है।

यह एक शादी का पिक्चर है।

यहां पे एक आदमी एक बच्चे को गोदी लिए हुए हैं और एक औरत भी है।

ऊपर में एक पंखा है और दोनों साइड ट्यूब लाइट लगा हुआ है।

जो जिसमें ग्रीन कलर की रस्सी टंगी हुई है।

जो ब्लैक कलर है और तीन ब्लू कलर के हैं।

यह हल्की येलो कलर की है।

सामने दीवार पे एक एडजेस्ट फैन भी लगा हुआ है।

मां उस होटल में त्रिशूल का फिगर बना हुआ है।

यह एक रूम का चित्र है।

यह दुकान का कलर व्हाइट है।

पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है उसके बगल में एक और आदमी है जो वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ--

यह एक पार्क का चित्र है।

यह मूर्ति येलो कलर की है।

यह एक बुक स्टोर है।

जिसकी फोटो में माला पहनाया गया है।

यह एक हार्डवेयर का दुकान है जिसका नाम पंचमुखी हार्डवेयर है।

बहोत सारी साड़ी भी लगे हुए हैं।

ऊपर में एक फ्रॉक भी टंगा हुआ है।